इस पर एक टायर छपा है और चैट लिखा है एक पेड़ लगा दिखाई दे रहा है।

और ये खेत खोद रखे हैं।

और नीचे भी कुछ गुलाब के फूल रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने की साइड कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

और धरती पर हरे कलर का मैट बिछा है।

और छत पर कुछ लकड़ी जैसी पी_ओ_पी लगाई गई है।

इस फोटो में काफी सारी बड़ी बड़ी मशीने दिखाई दे रही है।

यह बंगला काफी आलीशान दिखाई दे रहा है।

जो सड़क के किनारे खड़ी हैं एक बोलेरो कार के टायर के पास एक व्यक्ति बैठा है।